पानी में मछलियों के लिए एकाग्र होकर बैठा हुआ है यह व्हाईट कलर का है --

दी इसके पीछे भी एक दीवार है जो ईंट से बनी हुई है यहां झा जंगली झाड़ियां भी उगी हुई हैं।

यह बहुत बड़ा कमरा है कमरे में बहुत सारे मेज कुर्सियाँ रखी गई हैं बीचो बीच दी --

खम्भा भी बना है ब रेड कलर का सोफा है ब्लैक कलर की--

यह बा बड़ा सा कमरा है कमरे में दीवार बनी हुई है दीवार पेंटिंग भी है एक--

चारों तरफ से पर्दे डाले गए हैं जो कि व्हाईट कलर के हैं।

यह एक मॉल है मॉल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है मॉल में सभी सामान रखा है।

काउंटर बनाए काउंटर के इस बगल में सामान रखा गया कालीन रखी गई है फोल्डिंग का फोल्ड कर कर के--

उसके टिक मगल स्टैंड पर कुछ चोटियां लटकी हैं चोटियाँ रंग बिरंगी ब्लैक कलर की है।

यह एयरपोर्ट का दृश्य है एयरपोर्ट पे एरोप्लेन खड़ी हुई हैं कुछ उम उम --

तालाब है तालाब के चारों तीन अ तरफ हरी भरी घांस है पेड़ पौधे हैं बहुत दूर दूर तक।

मकान भी दिखाई दे रहे हैं यह बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं छोटे-छोटे बड़े-बड़े सभी पेड़ पौधे हैं यहाँ हरी-हरी घास भी हैं।

गमलों में पौधे लगाए गए हैं सड़क के किनारे इस के इसके ठीक सामने दो ब मोटरसाइकिल खड़ी है एक मोटरसाईकिल पे एक व्यक्ति बै--

स्टूल भी रखा गया है पवार रंग बिरंगे है।

उसके पीछे सो प्लांट है सो प्लांट बहुत सुंदर दिखाई देता है बहुत सारे फूल पौधे--

एक बैनर लगा हुआ है बहुत सारे मोबाइल है कलर व्हाईट भी है।

उनके हाथ में फैक्चर वगैरह हुए होते हैं वो इस पे बैठता है।

बहुत बड़ा मैदान है मैदान में कुछ जानवर दिख रहे हैं मैदान के चारों तरफ जमीन पे हर घास है।

दूसरी तरफ दीवार बनी हुई है बहुत छोटी-छोटी दीवार है।

ये बहुत बड़ा कमरा है कमरा में एक तरफ दीवार ब्लैक कलर से किया गया है उसमें--

ब्लैक कलर के ऊपर कुछ लिखा गया है।

छोटे-छोटे गमले गमले में पौधे रखे गए हैं दीवार पर कुछ--

लिखा गया है एक तरफ गेट है गेट पर काँच लगी हुई है।

मेज येलो कलर की कुर्सिया ब्राउन कलर की है जमीन ब्राउन कलर से कलीन लगाएंगे चारो तरफ़ से --

गत्ते में भी सामान रखा गया है चारों तरफ रैक पर भी समान रखा गया है।

और शायद प्लास्टिक के थैले में भी समान है इलेक्ट्रॉनिक्स तार रखे गए हैं यहाँ पे--

ऊपर बोर्ड लगा बोर्ड पर लिखा गया है बगल में रोड भी है।

रंग बिरंगे पेड़ पौधे पेड़ हैं।

कुछ पेड़ पीले रंग के कुछ ग्रीन है कुछ अलग रंग के है।

ये बहुत सारे पेड़ हुये है शू प्लांट है ये--

भी है चारों तरफ से वाइट पर्दे लगे हुए हैं खुला आसमान दिख रहा है।

ये बहुत बड़ा हाल है हॉल में नीचे के फर्स्ट दो कलर से की गई है।

यहां बहुत सारे मजदूर हैं जिनके हाथों में समान ढोने वाला है औ उम--

सड़क पे बहुत सारी गाड़ी फोर व्हीलर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है मोटरसाइकिल के ठीक बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

नीचे ऊपर चारों तरफ सामान नी रख सामान रखा गया है नीचे--

ये एक दुकान है दुकान में बहुत सारे गत्थे में पैक करके रैक पर जमीन पर सामान रखे गए हैं।

एक स्टूल भी है चारों तरफ से ब्लू रंग--

गत्ते में सामान रखा गया है यहाँ बैठने के लिए एक स्टूल भी है।

भरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं र सड़क भी है सड़क के ठीक उधर ठीक सामने एक बाइक खड़ी हुई है खुला आसमान है।

दीवार दीवार पर कलाकृति की गई है यहाँ बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं चित्र--

ई नये कुछ ब्लैक है ऊपर लोहे का रॉड लगाया हुआ है।

काउंटर है चारों तरफ से वाइट कलर की दीवार दिख रही है।

काउंटर भी बना हुआ है काउंटर पे कुछ सामान रखा गया है चारों तरफ से काँच लगा हुआ है काँच में--

ये रोड है रोड के किनारे आ--